और पीछे में हम लोग गोल्डन कलर का वॉल दिखाई देगा।

और वहां पर बहुत सारे समान रखा हुआ है।

वहां पर दो व्हाइट पिलो रखा हुआ है।

और ब्लू कलर का रोट लगा है।

और उस घर के बाहर बहोत सारे फ्लावर्स लगाया हुआ है।

और वहां पर आसपास बहुत बड़ा बड़ा ट्री ग्रीन ग्रीन ट्रीस हम लोग देख सकता है।

वहां पर फ्रेंड्स के लिए ग्रीन कलर का कर्टन लगा के--

इस पिक्चर में हम लोग देख सकता हैं बहोत बरे बरे पेड़ और ब्रांचेस भी बहोत सारे निकला हुआ है।

यहां पर हम लोग टेबल्स भी दिखाई देगा और वहां पर चेयर भी रखा हुआ है।

वहां पर कुछ लोग गाना गा रहा है और गिटार भी पकड़ा हुआ है।

और वहां पर वाइट कलर का घर भी दिखाई देगा।

और नीचे में हम लोग देख सकता है एक स्कूटी और एक बाइक पार्क किया हुआ है राइट साइड में।

और हम लोग उस एलीफेंट के ऊपर एक बंदे खरा हुआ दिखाई दे--

वहाँ का साइड साइड का वॉल रेड कलर से पेंट किया हुआ है।